कई सारे पेड़ पोध दिखाई दे रहे हैं गमला दिखाई दे रहा है।

घर दिखाई दे रहा है।

प्लेट दिखाई दे रहा है चपाती दिखाई दे रही है।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

वॉशर मशीन दिखाई दे रहा है।

कई सारे लड़के दिख रहे हैं।

गाड़ी दिखाई दे रहा है।

कई लड़के खड़े दिख रहे है।

शीशा का कैबिन दिख रहा है।

पहाड़ दिखाई दे रहा है।

आसमान का रंग काला है।

कूलर दिखाई दे रहा है पंखे दिखाई दे रहे हैं।

शीशा का खिड़की दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड पौधे दिखाई दे रहे है।

केक में दिल बना हुआ है।

फ्रिज दिखाई दे रहा है।

घड़ी दिखाई दे रहा है रंग-बिरंगी लाइट बढ़ रही है पर्दा दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रहा है।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

कई सारे लड़के और औरत लड़कियां दिखाई दे रही है।

रंग बिरंगे कारपेट बिछा हुआ है ।

इस तस्वीर में वाटर पार्क दिखाई दे रहा है।

एक बत्तक दिखाई दे रहा है।

फिर पौधे दिखाई दे रहे हैं घर दिखाई दे रहा है।

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान का रंग काला है लड़के दिखाई दे रहे हैं।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

कई सारे रंग बिरंगे बैलून दिख रहे हैं लड़के और लड़कियां दिख रही है।

कुर्सियां दिखाई दे रहा है।

जंगल दिखाई दे रहा है फिर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

गैस टंकी दिख रहा है लोहा का गेट दिख रहा है।

कुर्सियां दिखाई दे रही है कई सारे फूल दिखाई दे रहा है।

लोहा का गेट दिख रहा है।

रात का समय है कई सारे आदमी दिख रहे हैं।

दुकान है लाइट बढ़ रहा है।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

सुधा का दुकान दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक पानी दिखाई दे रहा है।

कई लड़के दिखाई दे रहे हैं दिया बढ़ रहा है रात का समय है।

कई सारे मूर्तियां दिख रही है पंडाल दिख रहा है पहाड़ दिख रहा है पंडित जी दिखाई दे रहे हैं।

ब्लू कलर का पंडाल गिरा हुआ है।

झुलुया दिखाई दे रहा है दिकान दिखाई दे रहा है।

फिर पौधे दिखाई दे रहे हैं करकट दिख रहा है।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

एक कैफे दिख रहा है घर दिखाई दे रहा है।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

मंदिर दिखाई दे रहा है।

जिसमें एक लड़का पूजा कर रहा है।

पर पौधे दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे कुर्सियां दिखाई दे रहा है।

एक पुतला दिखाई दे रहा है।

कई सारे झोला दिखाई दे रहा है।

दूल्हे राजा का पोस्टर लगा हुआ है।

एक लाल कलर का पोस्टर दिखाई दे रहा है।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

कई सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं।

एक होटल दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है झूमर दिखाई दे रहा है।

कई सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं गाड़ियां दिखाई दे रहा है।

मॉल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कई सारे लड़के और लड़कियां दिख रही है।

डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

कई सारे लडकी और लडकीया दिखाई दे रही है।

केबिन दिख रहा है पंखा दिखाई दे रहा है।

लड़के और लड़कियां दिखाई दे रही है।

कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

लाइन का तार दिखाई दे रहा है।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

इसमें कई सारे लड़के डांस कर रहे हैं।

टेबल दिखाई दे रहा है तिरंगा है।

दस्त बीन है खिरकी है।

लैपटॉप है कुर्षियां हैं कागज दिख रहा है पंखे दिखाई दे रहा है।

आदमी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में सड़क दिखाई दे रहा हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में एक पार्क दिख रहा है।

कई सारे गाड़ियां दिखाई दे रही है बस दिखाई दे रहा है।

पर्दे दिखाई दे रहे हैं।

डेक्स दिख रहा है चिमकिल दिखाई दे रहा है।

हरे भरे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हैं आसमान दिखाई दे रहा है।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

जिसमें कई सारे खिलौने दिख रही है।

लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहे हैं।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

सड़क दिखाई दे रहा है गाड़ियां दिखाई दे रही है।